लोग है जो कि बैठे हुए है नीचे और इधर पानी है और छोटा-छोटा नीचे घास है पेड़ है आसमान है।

--है जो कि खड़े है और इधर एक नाव है एक आदमी बैठा हुआ है एक आदमी है जो कि नाव को इधर एक और नाव है आसमान है पानी है।

और वहाँ पे एक कुर्सी लगाया हुआ हैं जो जाइमाला के लिए होते हैंऔर पे कुछ लोग हैं जो खड़े हुए हैंऔर यहाँ पे सीढ़ी बनाया गया हैं बॉक्स हैं रात का समय हैं।

यहां पे हम देख पा रहे हैं कि ये पानी का तालाब है और अंधेरा होने वाला है छोटा छोटा नीचे किनारे किनारे घास है। पेड़--

यहां पे हम देख पा रहे हैं कि ये दुकान है अ दुकान के टेबल पे है जो कि ये यू_पी_आई कोर्ड वाला आईकन बनाया हुआ है रखा हुआ है ये।

और ये बड़ा सा पोल है यह पे बिजली का और उधर पेड़ हैबहुत बड़ा-बड़ा जंगल है आसमान है।

यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये रोड है और रोड पे है की कार चल रहा है ऑटो है जो की चल रहा है और कुछ--